यह एक मैरिज हाल है यहां पे बहुत सारी टेबल्स रखी हुई है।

यहां पर ऊपर में लाइटिंग की गई है। यहां गेट बनाया गया है।

पीछे एक खपड़ा का पीला कलर का घर है और यहां पर एक पेड़ भी है।

यह एक होटल की तस्वीर है जिस होटल का नाम ताज पैलेस है।

सामने की ओर एक दरवाजा भी है बगल में बहुत सारे पेपर भी रखे हुई है।

यह आदमी हरे और पीले रंग के छतरी के नीचे है अगल-बगल बहोत सारे पेड़-पौधे भी हैं।

यहां मकान के ऊपर बहुत सारे खिड़कियां भी है यहां मकान के बाहर एक पेड़ भी लगा हुआ है।

ये जूते चप्पल का दुकान है जिसका नाम है आसाम शू सेंटर यहां पे बहुत सारे जूते रखे हुए हैं।

और अंदर यहां बाहर में करकट भी लगा हुआ है और इधर शेटर भी लगा हुआ है।

यह कपड़ा बेचने वाली दुकान का तस्वीर है यहां सफेद कलर का बहुत सारा रैक भी बना हुआ है।